इस फोटो में मुझे कुछ लाइटें दिखाई दे रहीं--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

इस फोटो में मुझे कैमरा दिखाई दे रहा--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

मुझे इस फोटो में कुछ मशीनें दिखाई दे रही--

इस फोटो में मुझे बहोत सारे बच्चे पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे खिड़की दरवाजे दिखाई--

इस फोटो में मुझे बैंड बाजा दिखाई दे रहा--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

इस फोटो में मुझे एक गद्दा दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में एक बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे बहोत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे एक हाॅल दिखाई दे रहा है।

इस फोटो मे मुझे एक छोटी सी मंदिर दिखाई दे रही है।